और ऊपर नीले कलर के बादल हैं। यहाँ पे भी नीले-नीले दिख रहे हैं। व्हाइट कलर का सारा एकदम रंगीनमय हुआ है।